बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

बैठने के लिए कुर्सी भी दिखाई गई हैं।

इसमें कुछ व्यक्ति समान लेते हुए दिखाई दे रहे है।

पास में ही एक घर का निर्माण हो रहा है।

एक नेताजी की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

एक मकान भी दिखाई दे रहा है।

एक मकान की विंडो भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारे लोग टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके पीछे एक पत्थर की दीवाल बनी हुई है।

सड़क पर एक व्यक्ति साइकिल से जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति गजरा बनाता हुआ भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक किराना दुकान दिखाई गई है।

घास लगी हुई है और कुछ पौधे भी लगे हुएं।

बहुत सारी लाइटे जल रही है।

पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स भी दिखाई दे रही हैं।

इसमें बहोत सारी रैंके बनी हुई हैं।

दो कंडेक्टर भी खड़े हुए हैं।

विंडो दिखाई दे रही है और एक झोला भी दिख रहा है।

कुछ जार रखे हुए हैं डलियां रखी हुई है।

बहुत सारी घास भी लटकती हुई दिखाई दे रही है।

सीढ़ियों पर गार्ड खड़ा हुआ है।

शोरूम का गेट कांच का है।

इसके ऊपर मैगजीन रखी हुई है।

खंभे के सांचे बने हुए हैं।

इन्होंने सर पर कपड़ा बांध रखा है।

पार्क में आने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक बेकरी शॉप की है।

जिसमें कांच की रैके बनी हुई है।

नीचे गमलों में पौधे लगे हुए हैं।

जिसमें बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

झूमर दिखाई दे रहे हैं।

अगरबत्ती मोमबत्ती जलती हुई दिखाई दे रही है।